पर मॉल है जहां पे सारे समान मौजूद है।

ये एक बागीचा है जहां पे बहोत बड़े-बड़े वृक्ष भी है और-छोटे छोटे पेड़ पौधे है।

और प्लेट मे दाल चावल सब्जी सलाद ये सब रखा हुआ है।

यहाँ पर कोई भी आ कर कोई भी परेशानी हो गाड़ी से रिलेटेड ठीक हो जाता है।